और सब कुछ सुविधाए हैं। यहाँ पर दुकानो पर अच्छी दुकान है। ये यहाँ पे और ये रखी है साबुन वगैरह मिठाई वगैरह आप खाते हैं अच्छा है।

कितने अच्छे-अच्छे कपड़े है देखो नीले पीले गुलाबी हरे सफ़ेद अ ऊपर ये अच्छे-अच्छे सारी शर्ट रखे है उँ उँ और लोहे के वो रखे हुए हैं उसमे कपडे रखे हुए हैं।

कॉपी किताबे रखे है और सामने पर्फुम वगैरह भी रख्खे हुवे है। पिन इन भी है यहाँ पर --